फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ बच्चे अभी भी खड़े हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं ये रात का समय है इधर बहोत सारी लाइटें हैं।

वह भी बहुत हरियाली है और बहोत अच्छा मौसम है।

यह एक चित्र हैं यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हैं लोगों के पीछे बहुत सारे दुकानें हैं

और कुछ लोग हंस रहे हैं और सारे लोग पीठ दिखा के खड़े हुए हैं।

वो भी एक लकड़ी की चेयर पर और उस पर कई सारी नीली कलर की लाइटें लगी हुई हैं और उन्हें हम इस्पोर्ट लाइट कहते हैं।

कुछ गाड़ी के सामग्री के उपयोग सामग्री पड़ी हैं।

यह एक चित्र है यहाँ पर एक मस्जिद की तस्वीर लगी हुई है और लाल कलर का कारपेट भी है।

इस इलेक्ट्रिक रिक्शा की दुकान का नाम है इलेक्ट्रिक व्हीक व्हीकल्स ।

और सामने दो कारें सफेद कलर की खड़ी हुई हैं।

इस चित्र में हम यह देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ा कॉरिडोर है।

और पास में एक बड़ा सा खंभा है और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि यह हाईवे --

और बाईसाईकिल भी खड़ी है बाइक्स भी खड़ी है और एक बुड्ढे अंकल सामान ले के--

इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक होटल है उसका नाम है--